और यह छ चक्का का बस है जो बहुत बड़ा है ।

और ये नदी में चलता है | इस पर दो लोग बैठे हुए हैं सूर्य उगा हुआ है ।

जहाँ पहाड़ी पर से झरना गिरता है यहाँ लोग जाते हैं नहाते हैं |

झंडा झंडा आरोहण गड़ा हुआ है।

और ढलाई कर रहे हैं | इसके बगल में मैदान है पेड़-पौधे हैं और अच्छे लगते हैं ।

यह एक गाड़ी पार्किंग है जहाँ बोहत सारे गाड़ी --

और ये बड़ा रेल है और रेल के इंजन दिखाई दे रहा है जो हरा कलर का --

यह एक बस स्टैंड है जहाँ बहुत सारी बस खड़ी हुई है जो व्हाइट कलर का दिखाई पड़ रहा है।

और बगल मे बहुत सारे मकान है जो बहुत अच्छा दिख रहा है ।

और पेड़ पौधे बहुत है और घने है और बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं ।

सामने लोग पूजने के लिए आते हैं और नहा-धुआ के आते हैं यह मंदिर सुंदर नजर आ रहा है ।